इस दुकान में एक दरवाजा भी लगा हुआ है और इस दरवाजे में शीशा भी लगा हुआ--

ये एक जगह है और यहां पे एक इंसान है जो साइकल पे है और एक बहोत बड़ा सा बिल्डिंग जैसा कुछ घर भी बना हुआ है।

जो हरे हरे रंग की है और ये यहां पे लाइट्स भी चल रहे है छोटे छोटे सफेद रंग के--

ये एक जगह है यहां पे एक कंप्यूटर भी रखा हुआ है एक कुर्सी भी है और यहां पे ये जो टेबल है वो वाइट कलर का है और यहां पे ये जो है एक मरकरी लगी हुई है जिसमें बहोत सारे लाइट्स है लंबे लंबे और यहां पे काफी सारे चीजें रखी हुई है।

टेबल भी लगा हुआ है जो सफेद रंग का है यहां पे कुछ कम्प्यूटर भी लगे हुए है जो काले रंग के है और ये जो काउंटर है ये सफेद रंग का है यहां पे दो इंसान बैठे हुए है जिसमें से एक ने हल्के नीले रंग की शर्ट पहनी हुई है यहां पे काफ़ी सारी लाइट्स भी लगे हुए है।

ये एक रेलवे स्टेशन है और यहां पे ट्रेन आती हुई दिखाई दे रही है यहां पे काफी सारे छोटे छोटे पत्थर रखे हुए हैं यहां पे ये पटरी नजर आ रही है जो बहुत लंबी सी है और यहां पे एक सीढ़ी भी लगी हुई है और जो ट्रेन है वो हरे रंग का है।

यहां पे काफी सारी मिट्टियां भी है और कुछ छोटे-छोटे पत्थर भी सब साइड में रखे हुए हैं।